हाय एक और नाँव दिख रही हैं उस पर एक आदमी हैं और भारत का झंडा फेहरा रहा हैं यहाँ पर आजू-बाजू में--

दिखाई पड़ रही है और यह बस फूलों से सजी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर एक आदमी दिखाई पड़ रहा है।